एक रास्ता में पाँच लड़के जा रहे हैं।

यह किसी प्रकार का गैरेज है।

यहां बहुत सारे बाइक ऑटो और दो आदमी खड़े हुए हैं।

साइड में का छोटा छोटा पैकेट भी दिख रहा है।

और ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है।

किचन में मुझे एक छोटा सा मेज दिख रहा है जिसके बगल में एक प्रेशर कुकर और वहीं पे छोटा छोटा बर्तन भी दिख रहा --

मसाला का छोटा छोटा डब्बा भी दिख रहा है जो की प्लास्टिक का है।

टी_वी भी दिखाई दे रहा है जो कि ऑन है।

यहां पे फैन फैन टांगने के लिए छोटा छोटा एंगल भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक सूरज और उसके आगे एक दो और लड़के खड़े हुए हैं और एक बोट में खड़े हुए है और मुझे बहोत बड़ा लेक भी दिख रहा है।

और पत्थरों के पीछे एक बड़ा सा दीवाल दिख रहा है जिसमें चौक से कुछ लिखा गया है वाइट कलर का।

अब जाते हुए दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मुझे एक छोटा सा कपड़ा का दुकान दिख रहा है।

औरत सब्जी भेज रही है।

यह एक बाजार का तस्वीर है जहां नीचे दो तीन बुड्ढा बैठे हैं।

यहां हरे भरे घास थोड़ा सुखा घास भी दिख रहा है।

गोदाम के बाहर वॉल किया गया है जिसका कलर ब्लू एंड पिंक है।

गाड़ी दिखाई दे रहा है।